घरस है कुछ चॉकलेटी कलर के है कुछ है कुछ रेत है एक बाइक खड़ी हुई हैं।

यहाँ पे एक पतरे का घर है और ऊपर ईंट का एक घर है पतरे के घर के सामने कुछ विंडो हैं।

कुछ क खिड़कियां है लकड़ी की है सामने एक साड़ी की दुकान डाले हुए वहां पे दो तीन चौडाहे अंदर जाने के पत्थरों के ऊपर --

कुछ गंदा रखा हुआ है नीचे हरे हरे थोड़ी घास है थोड़ी जमीन है।

यहाँ पे एक मस्जिद हैं मस्जिद के पास में वहाँ पे ये कलमा लिखा हुवा हैं इलाहा इलाहा इललाला हम्मदुसुरसूलुल्लाह का--

टाइमर की एक मशीन रखी हुई है नीचे इतने सारे लोग बैठे हैं जमीन पे इतनी सारी जहां नमाज़े रखी हुई हैं वहाँ पे एक ईमारत है ईमारत के पास में एक फैन रखा हु --

अ शर्ट पहना हुआ है कार के पीछे जा रहा है वहाँ पे इतने सारे टावर है टावर को लगे हुए इतने सारे वायर्स हैं।

यहाँ पे किचन है किचन के अन्दर ए_ सी_ रखी हुई है वहाँ पे इतना सारा सामान है बहुत सारे चमचे हैं --

उधर के ऊपर लाइटिंग लगी हुई है वहाँ पर तीन चार गुब्बारे भी लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें लगे हुए हैं सामान छोटे छोटे फ्रिज़ हैं फ्रिज़ के सामने --

यहां पे कई सारे लोग खेल रहे हैं यहां पे टॉवर लगा हुआ है टॉवर के ऊपर नीला आसमान हैं आसमान के --

का है और उसके मुंह में लाइट चमकती है उसे एक्सरा कह--

यहाँ पे इतना सारे चेयर रखे हुए हैं वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं के पास में।

यहाँ पे कटिंग शेविंग की शॉप है वहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं एक आसमानी कलर का ड्रेस पहना हुआ है आदमी वहाँ पे।

बहोत सारे चेयर हैं कुछ बैठने के लिए जो साथ में आय हुए उनके लिए टेबल हैं वहां पे तीन चार लोग कटिंग करने आते है वहां पे हरे कलर का--

इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे इतने सारे प्लेट्स हैं प्लेट्स के अन्दर खाना की चीज़ें रखी हुई हैं।

झाड़ के पास में छोटे झाड़ है बड़े झाड़ हैं नारियल का झाड़ भी है एक और एक कलर का डब्बा भी रखा हुआ है नीचे जमीन के ऊपर छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं।

नीला आसमान है आसमान के नीचे एक घर है उसके विंडो भी है विंडो के ऊपर पर्दे लगे हुए हैं डोर है डोर से आने जाने का रास्ता है।

यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के पास में कुछ लोग प पेट्रोल भर रहे हैं वहाँ पे पेट्रोल के बहुत सारे--

यहाँ पे एक झाड़ है झाड़ के पास बड़े बड़े दरक्त हैं दरक्त के पास में घर है घर की विंडो व्हाईट कलर की है।

यहां पे इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं --

बैंगन के बाग में एक नीचे धूपा छाई हुई है वहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है अंदर का घर--

काला सा सामान रखा हुआ है बहुत सारा नीचे एक बॉक्स है एक यलो कलर का बॉक्स --

यहां पे इतने सारे वाशिंग मशीन रखे हुए हैं उसके ऊपर बुके हैं बुके के ऊपर इतने सारे लाइट्स है।

यहाँ पे बड़े-बड़े झाड़ हैं झाड़ की वजह से बच्चों को धुप लग रही नहीं है लम्बे लम्बे झाड़ हैं बड़े बड़े बच्चे आराम से खेल रहे हैं सूखे भी पत्ते हैं यहाँ।

यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने इतने सारे लोग ठहरे हुए हैं ईमारत के सामने कुछ लोगों ने हिजाब बाँधा है कुछ लोग देख रहे हैं।

चॉकलेटी है करी हुई ईमारतें हैं ईमारत बहुत--